बहुत ही अच्छा सजावट है इसमें आप-आप आके घूम सकते है आपको बहुत ही आनंद मिलेगा यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है आप यहाँ सेल्फी भी ले सकते है बहुत ही अच्छा लग --

ये किसी का स्मारक लग रहा है यहां पे किसी स्वतंत्रता सेनानी के --

ये भगवान महावीर स्वामी का छबीस छब्बीसवाँ जन्म कल्याण वर्ष ईस्वी दो हजार एक को माहवीर माह संगे सन्देश के जगह पर ये मनाया गया।

आप इसको तोड़ नहीं सकते है सिर्फ देख सकते है बगल में उसके बगल में बहुत सारे फैक्ट्रीयां लगी हुई है जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे --

इन ख-खंभों के ऊपर तीन-चार घर बनाये गये है इस घर में पक्षियो का डेरा इस घर में पक्षियां रहती है।

दो झंडे लगे हुए हैं तिरंगे बैठने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है लैपटॉप है बहुत ही सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे हुए हैं जो कि ऑन रिकॉर्ड होता हैं बहुत ही अच्छा